जिसमें एक बच्ची रिसक रही है।

जिन्होंने सफ़ेद काले ऑरेंज नीले अनेक रंग के वस्त्र पहने हुए हैं।

इन गाडियों का रंग सफ़ेद काला नीला और लाल है।

ट्रक के ऊपर बोहोत सारे लोग है। जिन्होंने सफ़ेद सुनहरे रंग के वस्त्र पेहने हुऐ --